और यहाँ पर हमे प्लांट भी दिख रहा है और सामने हमे बड़ा सारा पेड़ भी नजर आ रहा है जिसका कलर हमे यहाँ पर ग्रीन दिख रहा है और एक आसमान हमे दिख रहा है।

और एक बोर्ड टंगा हुआ है जिसके अंदर हमे कुछ इंग्लिश मे लिखा हुआ दिख रहा है हमे यहाँ पर कुछ पेड़ दिखने को मिल रहे है जो की ग्रीन कलर के है।